विशाखा डेयरी पार्लर जिसके सामने चार बोर्ड लगे हैं दो बोर्ड --

सामने टेबल नज़र आ रहा हैं जिसके ऊपर कुछ प्लेटें हैं प्लेट में बचा खाने के बाद बचा हुआ खाना हैं।

रोज की ज़रुरत में आने वाला सामान--

बोहोत अन्य प्रकार के पेड़ लगे हुए है कुछ छोटे पौधे कुछ बड़े और फूल भी लगे हुए हैं।

दो प्याला और दो छोटी-छोटी प्यालियाँ दिख रही हैं जिसमें खाने का--

सामने पोस्ट टेलीग्राम ऑफिस दिखाई दे रहा हैं ऑफिस के बाहर कुछ --

सामने होटल का एक रूम दिखाई दे रहा हैं होटल के रूम में एक टीवी एसी पंखा लगा हुआ हैं।

और ब्लू कलर में हैं जिसके बगल में खंभा भी--

सामने एक केक दिखाई दे रहा हैं जिसका कलर व्हाइट क्रीम और रेड हैं केक के ऊपर काफी--

सामने एक मारुती सुज़ुकी नेक्सा सर्विस का शोरूम दिखाई दे रहा हैं जो की शोरूम काफी बड़ा हैं।

क्लीन का शॉप दिखाई दे रहा हैं दूकान पर कोई भी नहीं हैं दू--

सामने एक अलंकार डेरी फार्म नाम की दुकान दिखाई दे रही है जिसके बगल में पंजाब नेशनल बैंक का भी बोर्ड लगा हुआ हैं।

सामने एक गराज दिखाई दे रहा है जिसमें एक टूटी हुई कार खड़ी हुई है जिसको एक आदमी रिपेर कर रहा हैं।

सामने एक बड़े से पत्थर पे गौरव बुद्ध की फ़ो तस्वीर बनी हुई हैं और इस पत्थर के साइड साइड में भी काफी कुछ बना हुआ हैं।

सामने एक सलून दिखाई दे रहा हैं सलून का नाम स्मार्टी जेंट्स सलून हैं।

जिन नाव का कलर तीन नाव का कलर व्हाइट और ग्रीन है बाकी एक लाल कलर की और--

तीन नाव जिनमें एक यलो और रेड कलर की हैं बाकी--